बस से मतलब पूरा रोड गुजर रहा है बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं ठीक है यही सब दिख रहा है।

ये पार्किंग एरिया है और गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई है ठीक है पर और गाड़ियों का --

ये बहोत सारी गाड़ियां है बाहर ये मतलब किसी मकान के बाहर का लोकेशन है घर के बाहर का लोकेशन शो हो रहा है।

और हम्म मतलब सामने से चार दिवारी है ठीक है और कोई पार्क वगैरह का एरिया है।

के हाईवे के नियरबाई से एक दूसरा हाईवे निकल रहा है कुछ टेंपो दिख रहे हैं कुछ गाड़ियां दिख रही हैं पास में एक खंबा लगा हुआ है।

पहिये लगे हुए हैं ये मुझे लग रहा है कोई स्विमिंग पूल है ये कोई मतलब स्विमिंग पूल का ये द्रश्य है ठीक है।

ये मुझे कुछ चिड़िया घर नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है।